और मुझे इसके सामने मे एक हाथ भी दिखाई दे रहा आधा और मुझे वहां पे बहोत सारा पेड़ सब भी दिखाई दे रहे जंगल--

और मुझे पत्थर सब भी दिखाई दे रहे हैं फेंके और मुझे बहुत सारा लकड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि फेंके हैं।

और मुझे एक बच्चा भी दिखाई दे रहे है जो की पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

वो मुझे सामने बहोत ज्यादा पेड़ सब भी दिखाई दे रहे --

मुझे एक लड़की एक लड़का खड़ा होके भी दिखाई दे रहे हैं और दोनों फेस को छुपा के हैं।

और मुझे पीछे एक पत्ता घर भी दिखाई दे रहा है और उसमें एक कैलेंडर भी टांगा--

मुझे इस फोटो में एक बहोत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा और उसमें एक बोट भी दिखाई दे रहे जोकि ब्लू कलर का है।

और मुझे इसमें फ्लैग सब भी लगाया हुआ दिखाई दे रहे है इंडिया फ्लैग --

मुझे इस फोटो में एक येलो कलर का घर लंबा से दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे अंब्रेला लेते हुए दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा लोग।

इस तस्वीर में साइड में पत्थर सब भी रखा हुआ दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में ऊपर रस्सी जैसा भी दिखाई दे रहा है जाते हुए।

और मुझे बहुत ज्यादा आदमी लोग भी चल के भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक साइकिल दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहोत सारे घर सभी दिखाई दे रहे पीछे --

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के बहुत ज्यादा प्लास्टिक पत्थर सब भी दिखाई दे रहे फेंका हुआ।

मुझे इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रहा है सफेद रूम --

और मुझे बाहर एक पर्दा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लंबा से नीचे तक है।

और मुझे किलन मे ब्लू और पिंक व्हाइट कलर का भी कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे मुझे बहोत सारा छोता छोता बॉटल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग कलर में हैं।

और मुझे बहुत सारा टेबल और चेयर जैसा भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का है।

और मुझे ऊपर में बिस्किट सब भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक एक केक दिखाई दे रहे है जो की से बनाया है।

इसे केक की कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और मुझे सजाते हुए लव रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

मुझे उसके सामने एक स्कूटी भी खरा हुआ दिखाई दे रहे है जो की ब्लैक कलर का है।

और मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रहे हैं जो कि केक रखने वाला टेबल है।

और मुझे सिरी भी पुरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

और मुझे जमीन भी पूरा रेड और येलो कलर का दिखाई दे रहा है पूरा।

मुझे इस फोटो में बहुत ज्यादा चक्का दिखाई दे रहे है जो कि जे_सी_बी और ट्रक का है।

और मुझे बहोत सारा बाइक सब भी रखा हुआ दिखाई दे रहे है खड़ा होके पीछे मे।

और मुझे किटकैट और सब भी दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे उसके पीछे एक दुकान जैसा भी दिखाई दे रहे है जो की बंद करके है।

मुझे ये केक ब्राउन कलर का दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहे हैं जोकि उसमें बहुत सारा सामान सब भी रखा हुआ है।

और मुझे बहुत सारा लाइट्स सब भी जला हुआ दिखाई दे रहा ऊपर में वाइट कलर का।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा हैं जो कि टीना का घर है।

और मुझे दूसरा साइड व्हाइट कलर और दूसरा साइड ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक घर दिखाई दे रहे जोकि येलो कलर का है।

और मुझे एक गेट भी दिखाई दे रहे बंद किया हुआ और मुझे ये घर के अंदर सजाता हुआ दिखाई दे रहे फूल सब लगाता हुआ--

और मुझे घास सब भी दिखाई दे रहे है जो की नीचे मे है और मुझे गेट के साइड साइड मे दो वॉल दिखाई दे रहे है जोकि ब्ल्यू कलर का है।

मुझे इस फोटो में एक लोहा दिखाई दे रहे है जो कि पंखा जैसा है।

और मुझे कुछ लोहा के बीचों बीच छंडाव भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे लोहा तीन चाथू दिखाई दे रहें है।

मुझे एक बहुत बड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है जोकि उसमें दो बत्तख बैठा हुआ है पानी में।

और मुझे फेंकते दिखाई दे रहे जोकि कलर का है।

मुझे इस फोटो में तीन प्लेट दिखाई दे रे हैं जो कि सब सफेद है।

मुझे दो प्लेट में खाना भी रखा हुआ दिखाई दे रहे है जो कि पूरा येलो कलर का है।

मुझे इस फोटो में एक स्कूटी और दो बाइक दिखाई दे रहे है और उसके सामने रेड कलर का वॉल भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे दो पांव दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारा खाने का चीज दिखाई दे रहे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है मैंगो है और ऑरेंज सब भी दिखाई दे रहा है।

पर मुझे उसके सामने एक लड़का भी दिखाई दे रहे हैं जो की दुकान में है।

और मुझे फ्लोर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है जो कि बिछाया हुआ है।

और मुझे यहां पे बहुत ज्यादा लड़का लोग भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे एक लड़का व्हाइट मास्क पहन के साइकिल में उठ के भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ासा घर दिखाई दे रहा है और उस घर में गेट भी दिखाई दे रहे है जो की खुला हुआ है।

और उसके बाद एक दुकान में पॉपुलर होम भी दिखाई दे रा--

इस तस्वीर पे एक सीधा सा रास्ता दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे रास्ता थोड़ा दूर में एक बाइक भी खराब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे पहाड़ के ऊपर इंसानों भी चलता हुआ दिखाई दे रा--

इस तस्वीर पर रास्ता का कोना कोना जंगल पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक मशीन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे नीचे एक डस्टबीन फेंका हुआ है।

इस तस्वीर पे बहोत ज्यादा आलू दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर पे आलू यलो कलर का दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर पे एक पानी दिखाई दे रहे हैं बड़ा सा इस तस्वीर पे बहोत ज्यादा पत्थर सब दिखाई दे रे है।

इस तस्वीर पे एक लड़का भी चल के दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पे बहुत ज्यादा पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे रास्ता में भी ब्रिंजल रंग दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में लोहा दिखाई दे रहा है जो की खिड़की जैसा है।

तस्वीर मे बाहर भी तार सब भी फेंका हुआ दिखाई दे रहे --

तस्वीर में बाहर सीढ़ी जैसा भी दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर में लीची बहुत लाल कलर का दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में चेयर सब भी रखा हुआ दिखाई दे रहे हैं जो की बहोत काला है।

इस तस्वीर में रूम सब भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बंद है।

मुझे इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहे हैं जो की येलो कलर का कपड़ा पेहना हुआ है।

दो दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है।

ओ मुझे साइड साइड में केला का पत्ता भी दिखाई दे रहा है जो कि दो लगाया हुआ है।

मुझे इस फोटो में एक बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहे हैं और उस घर में बहुत ज्यादा इंसान लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पे प्लेट दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक चेयर भी दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में गीता भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे सोफा सेट का रंग ब्राउन और येलो मिक्स दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में क्रॉस का रंग काला दिखाई दे रहें --

इस तस्वीर मे एक बाइक भी रखा हुआ दिखाई दे रहें--

इस तस्वीर में एक हेलमेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में बहोत ज्यादा पेर पौधा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बादल सब भी सफेद से दिखाई दे रहें --

इस तस्वीर में दो डोंकी दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में एक पत्थर भी दिखाई दे रहे --

तस्वीर में फेंसिंग भी व्हाइट कलर का बना हुआ है।

इस तस्वीर में फुटबॉल भी एक दिखाई दे रहे है बाहर में।

और मुझे डीजेल भी लिख के दिखाई दे रहा है और मुझे वहां एक ट्रक भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर पे रास्ता सीधा करके है।

तस्वीर पे रास्ता में एक इंसान चलते दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पे पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहोत सारा पैरट सब दिखाई दे रे है।

इस तस्वीर में पैरट का रंग व्हाइट कलर है।

तस्वीर में पीछे बहोत ज्यादा कार्टून सब भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में लाइट सब भी जला हुआ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बाउल भी रखा हुआ है पानी पिंक कलर का--

इस तस्वीर में एक कार दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कार को सजाते हुए दिखाई दे रहें --

इस तस्वीर में कार के सामने एक लड़का भी है।

इस तस्वीर पे बहोत ज्यादा कार्टून सब फेका हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर बहोत सारा लोहा सब भी दिखाई दे रहा--

तस्वीर पे एक सफेद सा रस्सी जैसा दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में पेड़ सब भी पौधा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे सब कपड़ा लड़की लोग का दिखाई दे रहे इस तस्वीर पे नीचे प्लास्टिक में भी रखा हुआ कपड़ा दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर पे एक कार दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर पे कार के अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे गाड़ी का पीछा हुआ डिक्की खोला हुआ है।

इस तस्वीर पे बहोत ज्यादा फूल सब दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पर बहोत सब्जियां दिखाई दे रहे--